और उसके नीचे हरी हरी घास लगी हुई है।

ये बहोत खूबसूरत विकास भवन है।

और इसमें बहुत सारी लाइटें लगी हैं।

यहां पर दो आदमी हैं और उनके पास तीन लेडिस हैं।

और एक लेडिज के हाथ में दो फाइल हैं।

और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लाइट लग रही है।

यह एक एक जमुना नदी है।

यहां एक बहोत खूबसूरत पैलेस है और इसमें चार सोफे रखे हुए है।